और एक भैया वगैरा दिखाई दे रहे हैं किसी के कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं एट एट वन वन नाइन फाइव सेवन वन जीरो टू ।

इसमें तीन बालिकांए स्टेज पर अपना नृत्य हुनर दिखते हुए दिखाई दे रही है एक को पिंक और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए है।

यहाँ पर एक कार दिखाय दे रही है जिसके दोनों गेट खुले हुए है बाहर तीन आदमी खड़े हुए दिख रहे है ओर उधर सामने की ओर एक ब्लैक कलर की कार दिख रही है पीछे खंभा भी दिख रहा हैं।

और साइड में एक और मूर्ति है जिनके भी पैर छू रही है एक लेडीज़ --